गेट के बाहर में एक बाइक खड़ी हुई है।

एक से लेकर के दस साल तक के बच्चों के लिए--

यह जो चित्र है एक हॉस्पिटल का चित्र है जो चार फ्लोर में विभाजित है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और--

कस्टमर लेने के लिए आए हैं सामने खड़े होकर के फोन में बात कर रही है।

यह जो चित्र है चित्र के अनुसार यहां एक पशु पालन जो विभाग होता हैं वो है यहां पे शायद पशुओं को बांधा जाता हैं।

जो काफी कलरफुल पेंट किया हुआ है बहुत ही सुंदर सा रेड ग्रीन ये सब पेंट हुआ है और सामने ये जो दीवाल है।

जिसके अनुसार यहां पे लोग आते हैं और पेट्रोल भरवा के जाते हैं गाड़ी हो चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो--

लेकिन अभी रात का समय है तो यहाँ पे कस्टमर बिल्कुल भी नहीं हैं।

और बहुत सारे दू अह अनाज के साथ में किराने के सामान के अलावा जस्ट दुकान के बाजू में एक कपड़े का भी दुकान है।

टाकदमी स्विमिंग सीखते हैं।

माताजी का चेहरा ठीक से दिखाई ही नहीं पड़ रहा है सजावट के कारण--

तो बहोत अच्छी बात है ये सब होनी चाहिए चैरिटी का काम है जो गांव में आकर के बच्चों को--

तो आसपास के लोग काफी खुश हैं साफ सुथरा माहौल है।

चार बाईकें रखी हुई है जो देखने के लिए रखी हुई है और एकदम गाड़ियां हैं।

और बोरी में रखे हुए है एक साथ रखे हैं काफी फ्रेश और ताजी लग रही है जिसे लेने के लिए कस्टमर आएंगे--

इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण जी और अह सुभद्रा जी का--

दिए गए चित्र के अनुसार यह जो समय है शाम का समय है और इस चित्र में कुछ बच्चे हैं जो उनके खेल रहे हैं।

पार्क में पार्क में कुछ बड़े बड़े अशोक के पेड़ भी लगे हैं बीच में आवले के पेड़ है।

दिए गए चित्र के अनुसार यह जो चित्र है वो एक साड़ी का शोरूम है जो काफी सुंदर लग रहा है बहोत अच्छी कलेक्शन --

दिए गए चित्र के अनुसार यह चित्र एक नर्सरी का है जिसका नाम है संजय नर्सरी और यह नर्सरी जो है रोड के किनारे में रखी हुई है।